सारा ब्लू कलर का बहोत सारी खिड़किया है जो बंद है एक खिड़की खुली हुई है नीचे में छोटी-छोटी खिड़किया है जो खुली हुई है।

ये इमेज में मुझे एक साफ़ दिख रहा है जिसके ऊपर बैनर लगा के कृति किड्स वियर बच्चो के कपड़ो के है फिर एक पंखा है जो ब्लैक कलर का दिख --

आगे गार्डन है जो बहुत छोटा सा है जो बड़े बड़े घाँस व घाँस लगे हुए है एक छोटा सा पौधा है एक घना सा पौधा है फिर ये--

जो येलो कलर का उसके ऊपर ग्लासे है कुछ फ्रेमे टंगी हुई है दीवार में फिर किश फिर सीसा वाला दीवार है।

फिर बीच में पानी बह रहा है जो वाइट कलर का दिख रहा है फिर आगे तालाब है।

पेंट पहन कर अब बहुत सारे लोग है जो बैठे हुए है कुर्सी में एक कुर्सी खाली है वाइट कलर का दिख रहा है रेड कलर का कारपेट है कुछ खिड़किया जैसे पर्दे लगे हैं।

ये इमेज में मुझे स्विमिंग पूल दिख रहा है जिसमें कुछ लड़के ओन स्क्रीन कपडे पहन कर नहा रहे है फिर कुछ लड़कियां भी हैं ब्लू कलर के कपडे पहने हुई है फिर दीवार है छोटा सा --

इस इमेज में मुझे एक रूम दिख रहा है जिसमे कुछ कारपेट बिछी हुई है जो बहुत कलर फुल है जैसे ऑरेंज ग्रीन रेड पर्पल --

इ इमेज में मुझे एक चर्च दिख रहा है जो बोहोत सजाया गया है च फिर इशू का पेंडंट है जो आगे रेड कलर का दिख रहा है बॉउंड्री को बहुत बल्ब से --

एक आदमी है जो चल रहा है उसका ये परछाई दिख रहा है फिर एक पेड़ है जिसमे लाइट कलर की बत्ती जल रही है।

ये इमेज में मुझे एक बहोत बड़ा जंगल दिख रहा है और इस जंगल में जगह-जगह खजूर के पेड़ लगे हुए है घास उगे हुए है जगह-जगह मिट्टी दिख रही है।

इस इमेज में मुझे एक रूम दिख रहा है जिसमे ऊपर में टेबल के ऊपर में एक कंप्यूटर रखा गया है फिर साइड में --

पाइप है जो बाहर रखा हुआ है फिर एक लकड़ी का टुकड़ा है जो रखा हुआ है एक हथोड़ी है जो रेड और ब्राउन कलर का दिख रहा है साइड में कुछ मिट्टी कुड़ी गई है। --

साइड में गेंदा फूल का माला दिख रहा है जो सुख चूका है फिर गेंद लाइव दिख रही है फिर ए.सी दिख रहा है जो वाइट --

यह इमेज में मुझे एक तालाब दिख रहा है अऊ कुछ बोटे दिख रही है रेड ब्लू येलो कलर के उसके ऊपर से छत है फिर बास का--

ये इमेज में मुझे ए गार्डन दिख रहा है जो स्विमिंग पूल जैसा थोड़ा सा है फिर ऊपर में फव्वारा है वही पानी बेह ऊपर मे लग रहा है।

ये इमेज में मुझे स्कूल दिख रहा है जिसके खिड़की के पल्ले खुले हुए है जो ब्राउन कलर के ये स्कूल रेड और वाइट कलर में है।

फिर साइड में सीढ़िया दिख रही है छोटी-छोटी फिर उस सीढ़िया के साइड में--